और अलग अलग तरीके के झाड़ नज़र आ रहे हैं जिनमें फूल भी लगे हुए हैं।

जिसमें रेलिंग अ आस-पास रेलिंग लगी हुई है पीछे बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है।

इस पिक्चरस में काफी सारे क्वाटर्स में घर दिखाई दे रहे जोकि सैम कलर सैम साइज के है जिनमें विंडोज दिखाई दे रहीं है।

यहाँ एक स्कूल के बाहर का फोटो है जिसपर एक बड़ा स बोर्ड लगा है स्कूल के नेम का जिसपे लिखा है--